यहां पर हमें बादल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें लाल कलर की चेयर्स भी दिखाई दे रही है उस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।